यह एक चित्र है और इस चित्र में एक कमरा दिखाई दे रहा है। इस कमरे के अंदर कई लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक बड़ा-सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। यह बिल्डिंग सफेद रंग की है और बिल्डिंग का आकार बोहोत ही बरा है।

यह बिल्डिंग में कई सारी खिड़कियाँ हैं और जिसमें सभी खिड़कियाँ में कई तरह के कांच लगाई गई है| बिल्डिंग के नी --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक बरा-सा गार्डन दिखाई दे रहा है। इस गार्डन में बोहोत सारे बच्चे जमीन पे पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे --

कई सारे फलों को एक ठेले के ऊपर रखा गया हैं। इसमें एक सेब --

इसमे एक सरक के साइड एक बड़ा सा ट्रासफॉर्मा भी बना हुआ है और उस ट्रासफॉर्मा के दोनों छोर --

ये शाखा है। इस बैंक में एक ए_टी_एम भी है। यह ए_टी_एम भी केनरा बैंक की है।

खिलौने को कुछ खिलौने को दुकान के अंदर सजाया गया है| जिसमें कुछ खिलौने को ज़मीन पे भी रखा गया है।

कोल्ड ड्रिंक्स की बोत्तले भी रखी गई हैं। सभी बोतल को एक लाल रंग की कैरट में रखा गया है।

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक बरा सा खेत दिखाई दे रहा है| इस खेत के अंदर कई सारे छोटे-छोटे वृक्ष है।

इस मस्जिद से कुछ ही दूरी पे कुछ हरे भरे झाड़ियां भी हैं और यह मस्जिद को चारों ओर से स्टील की गेट से सजा --

इस मस्जिद में दो गुम्बज भी बने हुए हैं दोनो गुम्बज का आकार पतला दिखाई दे रहे है और ये गुम्बस बड़ा बना --

कॉफ़ी देते हुए दिखाई दे रहे है। यहाँ उन कॉफ़ी की ड्रेस भी पहने हुए है और इस कॅफे में एक लाल रंग की फ्रिज रख --

पीछे एक जीसस की मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति से कुछ ही दूरी पे एक लाल रंग की कुर्सियां लगी हुई हैं और इस हॉल --